महात्मा गांधी भगत सिंह लक्ष्मी भाई भारत माता का नक्शा डॉक्टर अंबेडकर सवाल --

ये देखिए यहां पे गाड़ी सर्विस की जाती है धुला जाता है गाड़ी को ये व्हाइट कलर की फोर व्हीलर खड़ी हुई है।

यहां पे एक आदमी है जो गाड़ी को वाश कर रहा है और यहां पर एक स्कूटी भी खड़ी हुई है स्कूटी के सामने एक फैन लगा हुआ है।

देखिए प्लाई भी है और कुछ लकड़ियां भी है।

बैठने के लिए कागज है और गाड़ी ऑफिस के बाहर कार भी खड़ी हुई हैं देखिए।

एक जेंट्स एक दूसरी साइड भी जेंट्स हैं बाहर भी एक जेंट्स खड़ा हुआ है गाड़ी के ऊपर।

देखिए कितना अच्छा है एंबुलेंस की व्यवस्था है जेंट्स भी हैं स्टाफ का बोर्ड लगा हुआ है।

ये देखिए गाइस ये भी एक स्कूल है और यहां पर ये सर मैडम है जो --

कॉलेज फॉर गर्ल्स गर्ल्स कॉलेज है ये। देखिए कितना सुंदर है कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है यहां।

व्हाइट कलर सजावट है दो जेंट्स भी खड़े हैं कितना अच्छा--

ये देखिए गाइस ये टाटा का ऑफिस है यहां पे दो ज चेयर देखिए --

वहां कितनी कंफर्टेबल चेयर है और ये टेबल देखिए।

अच्छा है ये देखिए अलमारी वगैरा वॉव कितना अच्छा लग रहा है कितना अच्छा ऑफिस क्रिएट किया है इन लोगों ने।

इस रूम दा रॉयमंड शॉप ये शॉप है।

ये देखिए गाइस यहां पे कुछ बच्चे है जो रेस लगा रहे हैं।

और यहां पर उपला की बॉटल है फिल्टर है मटका रखा हुआ है मटकी का ग्लास है।

घर टाइप का बना हुआ है देखिए यहां पे कुछ चेंज नहीं है जो --

वाओ कितना अच्छा पैलेस है गाइस देखिए कितना सुंदर लग रहा है वाह कितना ब्यूटीफुल देखिए छोटा सा झरना है।

हैलो ये देखिए यहां पर कार है दो कार है तीन चार कार है और --

चार कार खड़ी हुई है और तीन लोग काम कर रहे है कार को रिपेयरिंग कर रहे है यहां पर कार का सामान डला हुआ है।